व्हाइट कलर का एक घर दिखाई दे रहा है। व्हाइट आसमान दिखाई दे रहा है और पानी का फव्वारा उड़ता दिखाई दे रहा है।

दीवाल पे कुछ तिरंगा झंडे का अ शोल बना दिखाई दे रहा है।

नीचे कारपेट बिछा दिखाई दे रहा है।